वगैरे मगैरे मशीने रखी हुईं है किनारे साइड एक लड़का और बैठा हुआ है।

पाइप के किनारे किनारे ऊपर खिड़कियां भी बनी हुई है।

फर्श में टाइल्स लगी हुई है और सुंदर सुंदर चित्र दिख रहा--

से रंगा गया हैं भवन के ऊपर साइड खिड़कियां हैं नीचे साइड मेन गेट है।

ऊपर हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं बीच में खंबे लगे हुए हैं।

यह चित्र एक हॉल को दिखा रहा है हॉल के सीलिंग में--

हरे कलर से नेचुरल लिखा हुआ है सफेद कलर से टेस्ट द नेचुरल लिखा है।